यहाँ बहुत ही सुंदर एक बिल्डिंग है और यहाँ पुलिस की कार भी खड़ी हुई है दो तीन।

यहाँ एक पार्क है पार्क मैं पेड़ घांस लगी हुई है और यहाँ पर एक घर भी दिख रहा है।

यहां एक दुकान है और यहां एक खिलिया भी है बाइक्स खड़ी है दुकान है नेट लगी है ऊपर धुप के कारण।